हरा चटाई है लाल रंग का चटाई हैं ।

टूपी पहना है मोबाइल पकड़े हैं।

ये एक बड़ा गुफ़ा है गुफ़ा में एक आदमी भी हैं ।

गाड़ी भी खड़ा है सादा रंग का।

मसाला बना रहे है सेरमेंट का --

मछली खरीदने आये है बहुत सारे आदमी बेठे हुए है खड़े भी हुए है।

तो झंडा दिख रहे हैं भरा भरा पेड़ है।

बहुत अच्छा दिख रहा है सफेद रंग है।